सब स्टेडियम टाइप दिख रहा है यहाँ बहुत सारे पब्लिक दिख रहे हैं सब सुबह-सुबह का टाइम है कोई जॉगिंग तो कोई कुछ लोग खेलने आते हैं।

एक एक सूटकेस है उसके ऊपर ए.सी. है फुटबॉल रखा है साइड बोर्ड में कपड़ा रख हुआ है साइड में कुछ ग्रीन कलर रखा हुआ है किसी बच्चे का लग रहा है।

बहुत बड़ा सा मूर्ति है। कुछ उनके ऊपर पंख है।

और यहाँ सोने का कुछ हाथ में कंगन-वंगन पहने हुए --

जिम है पोस्टर लगा हुआ है व्यायामन व्यायामशाला करके है।